उन हंस की चोंच पीले रंग की है और पैर --

आ-म् प्रोडक्ट रखे हुए हैं उस शीशे में।

यहाँ का एक बड़ा से मैंदान नजर आ रहा है उसके किनारे कई सारे पेड़ लगे हुए हैं।

उन्ही के बीचों बीच दो शुतुरमुर्ग दिखाई दे रहे हैं।

शादी का एक बोहोत ही सुंदर वेन्यू --

दिए गए इमेज में हमें नए नवेले --

सामने दिए गए चित्र में हमें एक हाल --

जिनमें से एक पंडित हैएक दूल्हा है और दो आदमी और हैं।

लिखा हुआ है चिशतिया जाँमा मस्जिद।

तीन रंग की कार है। जिसमें एक कार भूरे रंग की हैदूसरे सफेद रंग की है और तीसरे लाल रंग की है।

पोस्टर लगा हुआ है जिसमें एच.डी.एफ.सी. बैंक लिखा हुआ है इस घर में छत में जाने के लिए सीढ़ियां नजर आ रही हैं।

इसमें बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है होटल कमला एण्ड --

कहीं पौधे आ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इसमें लाल रंग के फूल भी नजर आ रहे हैं। साइड में हमें --

लड़कियां बैठी हुई हैं यहाँ पे हरे और लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ है।

अव फंक्शन का एक वेन्यू सजा हुआ है जिसमें कई सारे सोफें रखे गए हैं और कई सारे --

और नारंगीलाल रंग कीपीले रंग की है।

आ ड्रिल मशीन से छेद करते हुए नजर आ रहा है।